यह एक बीजी रोड का दृश्य है रोड के बगल में एक पुल भी है फूल की बाउंड्री ब्राउन और क्रीम कलर की है।

यह एक होटल का दृस्य है जिसके चारों तरफ ऊपर नीचे टाइल्स लगे हुए हैं ।

सोफे के बगल मे फूल पत्ती लगे हुएं हैं व्हाइट गमलों में और लाइटें भी लगी हुईं--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

इस रूम के आधे दीवार में ब्राउन कलर की कारपेट चिपकी हुई है और नीचे जमीन में भी ब्राउन कलर की कारपेट बिछी हुई --

उसमें एक एलइड बल्ब लगे हुवे है और एक पंखा भी लगा युवा है दूसरे तरफ एक घड़ी भी लगी हुई है।

नीचे बेंच पर सारे बच्चे बैठे हुए हैं और एक काउंटर बना हुआ है उसमें एक--

इसके नीचे में वाइट कलर का टाइल्स बिछा हुआ है टाइल्स पर एक कचरे का डिब्बा भी रखा हुआ है डिब्बे के बगल में ब्लैक कलर की कुर्सियां लगी हुई हैं।

यह एक जिम करने वाला कमरा का दृश्य है इसके दीवार की कलर ब्लैक से है और नीचे में भी ब्लैक कलर की टाइल्स लगी हुई है।

एक छोटा सा बिल्डिंग का दृश्य है जो की पोस्ट ऑफिस है इसके दीवार की कलर ब्राउन और वाइट कलर में है।

यह एक भव्य मंदिर का स्थल का दृश्य है मंदिर की छत रंग बिरंग से सजी हुई है ग्रीन लाइट और व्हाइट लाइट से।

जो ब्लैक और वाइट और रेड में है मकान के ऊपर एक झंडा लटका हुआ है।

सारा फल सामग्री रखा हुआ है और बच्चे खेल रहे हैं बड़े बड़े पेड़ भी है पीपल का और नीचे--

दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल भी लगी हुई है।